शायद एक क्लीनिक या डॉक्टर का कमरा हो सकता है।

इस दृश्य में एक छोटा सा घर दिखाई दे रहा है।

क मौसम भी ऊपर में बहोत खराब दिखाई दे रहा है।

यहां पे एक और आदमी है और यहां पे पुराने पुराने कार बनते भी हैं और बिकते भी हैं।

इस दृश्य में एक घर दिखाई दे रहा है।

यहां पे एक पेड़ भी है।

यहां पे दो लोग बैठे हुए हैं दो दो अलग अलग ऑफिस में यहां पर दो शटर है।

बाहर से जाने का रास्ता है वहां पे एक लैपटॉप और एक प्रिंटर ढेर सारी बुक भी रखी हुई है।

यहां पे नीचे में फर्श कलर व्हाइट है।

यहां पे एक बहुत बड़ा झील है।

तस्वीर में तीन वाश बेसिन दिखाई दे रहे हैं।

किसी ने रेड किसी ने व्हाइट किसी ने ब्लू किसी ने ब्लैक कलर की ड्रेस पहनी हुई है और यहां पे उनके एक कोच सर भी दिखाई दे रहे हैं।

जगह पूरा जाली से कवर है।

ए_टी_एम में एक आदमी पैसे निकल रहा है और एक आदमी बाहर खड़ा है और यहां दो तीन औरत और एक बुढिया भी दिखाई दे रही है।

छोटे छोटे पत्ते भी लगाए हुए हैं और ये ए_टी_एम के आसपास में बहोत सारी गंदगी है।

यहां पे शैम्पूल भी रखा हुआ है और यहां पे बहुत सारे साबुन भी है।

दो तीन नाव है काफी पुराने जैसे दिख रहे हैं।

यह जगह थोड़ा जंगल एरिया है बच्चों ने बैग लिया हुआ है।

इस दृश्य में बहोत सारे लोग किसी चीज को लेकर यहां पे खड़े हैं।

उपर में बहोत सारे लाइट भी लगे हुए हैं।